पहाड़ दिखाई दे रहा है पहाड़ के थोड़ा आगे मुझे किले दिखाई दे रहे हैं।

पास में मुझे एक बड़ी सी पिलर दिखाई दे रही है।

मंदिर के बाहर मुझे सीढ़ियां दिखाई दे रही हैं।

दो मजदूरों ने लाल रंग की--

मुझे यहां पर नर्सरी दिखाई दे रही है जिसमें बहोत सारे गमले दिखाई दे रहे हैं।

व्हाइट बोर्ड के पास मुझे एक स्विच दिखाई दे रहा है।

नीले रंग की टी शर्ट में योग करता हुआ एक आदमी दिखाई दे रहा है जिसके पास टोपी रखी हुई है।

मुझे यहां पर बहुत सारा डेकोरेशन दिख रहा है डेकोरेशन लाइटों से किया गया है।

सो कुर्सियों के पास मुझे एक टेबल दिखाई दे रही है जिस पर ग्लासेज रखे हुए हैं।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

इन दोनों घरों के पास में बहोत सारे पेड़ पौधे हैं।